राइट साइड के पीछे तो लैपटॉप रखे है।

पिक्चर में तीन परसन दिखाए गए हैं बीच वाला परसन का चेहरा ब्लर है।

इस फोटो में राइट साइड एक ए_सी है एक सी_सी_टी_वी कैमरा है और इसके ऊपर एक सीलिंग फैन लगा हुआ है।

फोटो में किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान दिखाया गया है।

फोटो में एक रूम दिखाया गया है।

लेफ्ट साइड एक बैनर है जिसमें फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिखा गया है।

फोटो में बहुत सी गाड़ी पार्क दिखाई गई है।

स्विमिंग पूल मे एक स्लाइड स्लाइडर भी दिया गया है।

इस फोटो में किसी बड़े हॉल का व्यू दिखाया गया है।

फोटो में चारो तरफ पेड़ पौधे हैं और हरियाली भी छाई हुई है।

इसमें दिन का मौसम दिखाया गया है और आसमान में सफेद बादल भी हैं आगे के राइट साइड एक टावर भी दिख रहा है।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

स्कूटी के आगे से एक गाड़ी आते हुए देखी जा सकती है।

ये फोटो में किसी मिठाई की दुकान का फोटो दिखाया गया है।

यह फोटो में किसी पार्टी या सेलिब्रेशन को दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू दिखाया गया है।

सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं।

ऊपर के साइड बहुत सी लाइटिंग्स लगी हुई है।

इसके आगे बहोत लोग जा रहें हैं आगे बहोत से पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं।

बिल्डिंग या होटल के छत टीन से बनी है इसके सामने बहुत से चित्र भी बने हुए हैं।

पैनल नीले रंग का है फोटो में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और हरियाली छाई हुई है।

आगे के साइड एक नीले कलर की तारपोलिन भी बिछाई हुई है।